और अभी इतने सारे सिल्वर कलर में पेंटेड है पीछे कुछ अलमारी भी रखी हुई है।

अ तीन बलूनस लगे हैं तीन अलग अलग जगह --

और हर बैलूंस में तीन तीन का सेट है चार का सेट है।

और यहाँ पर एक रोड है जहाँ पर अभी कोई है नहीं।

ये एक हनुमान जी का मंदिर है ओ वहाँ पे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है।

यहाँ पर सब लोग ऐसे जाएँगे अंदर एंट्री है अंदर जाने के बाद हर टाइप का लगा हुआ है लगा हुआ है वहाँ पर लोगो --

और यहाँ पर पास में कल्टिवेटर रखा है एक पाला रखा है।

बड़ीया है यहां पे पीछे लोग है जहां पे फोटो वोटो घिंचा सकते हैं दो पंखे पडे हैं।

ये यहाँ पे शॉप है जहाँ पे हमारा जो टी_वी विवि का डी_टी_एच का सिस्टम मिलता है वीडियोकॉन वाली --

ये गाँव से जाता हुआ रास्ता हैजिस पर आगे ब्रिज है छोटा सा जहाँ से निकल सकते हैं।

यहां पर पानी में हमें घुसना नहीं पड़ेगा सीधा निकल आ जा सकते हैं।

पेड़ वेड सूख रहे हैं जबकि नहर के पास में--

और इधर पास में एक गैलरी है जहां गैलरी से आ जा सकते हैं।

एक शादी का अच्छा माहौल चल रहा है बर्थडे पार्टी भी कह सकते हैं जहां पे -----

फिशेस काटी जा रही है इनका वो सारा स अ इधर कचरा डाला जा रहा है।

पीछे से बेसिकली लाइट का अच्छा वो मिल रहा है व्यू इसका सारा चेहरा वेहरा दिख रहा है अच्छा लग रहा है देखने में

बाहर में लाइट कम है अच्छा लग रहा है इंटीरियर देखने में अच्छी अय मंदिर भी है।

यह एक अ दुकान है जहां पे बेसिकली हमें वॉचेस वगैरह मिल जाती हैं।

घर अच्छा बना है शायद इंडिगो पेंट्स वालों ने पेंट किया है ये--

और घर वाइट कलर से पेंटेड है मतलब घर नहीं कॉलेज ही बोलेंगे वाइट कलर से पेंटेड है।

हरमन जींस पे पेंटस भी मिल सकते हैं स्पोर्ट्स शूज भी मिलते हैं।

ये किसी पार्टी या शादी के लिए एकदम बढ़िया गेट बनाए हुए हैं इधर रेड कलर का इधर ब्लू कलर का--

और साइड में एकदम अच्छा सा अ फूल का डेकोरेशन है अच्छा लग रहा है देखने में अंदर बहुत लंबा है लंबे जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं लाइट का भी सिस्टम है ऊपर लाइट भी फोकस कर सकते --

यह चोर तो नहीं लग रहे हैं लेकिन लॉकर में सारा सामान दिख रहा है यह अ ज्वेलर्स को इन्हें देख के रखना चाहिए सामान ऐसे नहीं रखना चाहिए।

अ जे_सी_बी काम कर रही है यह रेलवे का शायद कोई अ स्टेशन है।

कभी ट्रेन दिक्कत भी कर सकती है ऐसे नहीं होना चाहिए यह हिल हिल के बोंड्री सारी टूट जाएगी ईट गिरेगी ट्रैक पे।

यहां पे मोबाइल मार्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी शॉप में बेसिकली --

और एक दूर में येलो कलर का वो बना हुआ है जहां प बाहर एक वैन खड़ी हुई है।

पीछे ही ऑटो खड़ा है और पास में ही शायद कोई थिएटर वगैरह है।

यह एक शॉप है मार्केट एरिया में जहां हम लोग रोज जा की इलेक्ट्रिकसिटी का सामन खरीदते है।

और अंदर दुकान है एक काउंटर लगाया यहाँ पे अंकल बैठा हुआ है।